मुझे इस पिक्चर में एक जुलूस दिख रहा हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक बहुत ही शानदार बंगला दिख रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक शॉप दिख रही है जिसमें नाइट कैंडल --

मुझे इस पिक्चर में एक शादी का स्टेज --

कैमरे वाले लोग फोटो खींच रहे हैं कई सारी भीड़ जमा हैं।

फर्नीचर बना है कई सारी कुर्सियां लगी हुई है।

जिसका गेट ब्लू कलर का है कंपनी में कलर क्रीम कलर किया है और आसपास कई सारे पेड़ पौधे और बड़ा सारा ग्राउंड है।

कई सारी चीजे हैं फर्नीचर कुर्सी सोफा --

इस पिक्चर में बहोत ही बड़ी हवेली दिख रही है और हवेली में काफी सारे गेट हैं और--

और इस में एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दास ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह--

इस पिक्चर में मुझे एक बाहर वॉशिंग शॉप दिख रही है जहां पर एक गंदा शॉप --

कार वॉश कर रहा है और यहां काफी अच्छी व्यवस्था की गई है कार वॉश करने की।

मुझे इस पिक्चर में एक मॉल दिख रहा है इरका जहां पर काफी सारी वैरायटीयां --

मुझे इस पिक्चर में एक बहुत ही बड़ा और शानदार ब्रिज दिख रहा है।

और बहोत ही शानदार दिख रहा है जहाँ पर पंखा लगा हुआ है क्रीम कलर किया हुआ है बहोत सारे लॉकर भी है।

मुझे इस पिक्चर में एक हार्डवेयर की शॉप दिख रही है जहां पर लैट्रिन की शीटे --

कैबले हैं कई सारे चार्जर्स है ब्लूटूथ है सैल है और भी बहुत सारी चीजे है।

ये इस पिक्चर में एक बैंक दिख रहा है जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार।

इस पिक्चर में एक बोर्ड दिख रहा है उस बोर्ड पर लिखा है शिव प्रिया ऑटो इंजीनियरिंग वर्कर्स ।

के आस पास कई सारे घर बने हुए हैं एक रोड निकली हुई काफी सारी बिल्डिंगे बनी हुई है।

मुझे इस पिक्चर में एक जू नजर आ रहा है जहां पर काफी सारे जानवर अधिकतर इस जू में हिरनें दिखाई दे रही--

एक मैन है जो भगवान का श्रृंगार कर रहें हैं।

आइस्क्रीम है। आर्टिफिशियल बहुत ही शानदार गेट बना हुआ है। आसपास बच्चों के खेलने के काफी सारे चीजें है।

और कुछ गार्डन है कई सारी--

जिसे कुर्सी टेबल भी बनते है यहां।

रंग की बैलून लगे हुए हैं पिंक --

मुझे इस पिक्चर में बहोत ही बड़ा पार्क दिख रहा है। जहां पर--